सामने एक ठेला और बाइक लगा हुआ है। जो लाइन में कतर में खड़े है वो शायद पैसो के लिए खड़े है पैसे निकालने के लिए अपने --

ये एक बोर्ड पे लिखा हुआ है डॉक्टर लक्ष्मी प्रासाद सिन्हा ये एक प्राइवेट आई.टी.आई. है।

नारंगी रंग के भगवाधारी वस्त्र पहेन रखे हैं।

यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है एक ऊपर एक बोर्ड है एक निचे बोर्ड है हरे रंग के बोर्ड पे लिखा है न्यू होटल --

और उस के बगल में एक बोहोत बड़ा सा गेट है जो की उजला और--

कत्थई कलर से रंगा हुआ है बगल में।

सामने एक बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड पर लिखा हुआ है अमर ज्योति के--

यहाँ एक औरत जा रही है सीढ़ियों पर और सीढ़यों के ऊपर एक ही बड़ा सा वृक्ष है।

यहाँ एक सामने ग्राउंड नजर आ रहा है। मैदान नजर आ रहा मैदान में कुछ छोटे-छोटे--

एक मैदान है। मेद-- मैदान में एक जे.सी.बी. खड़ा है।

और बहुत सारे बाइक खड़े हैं दरवाजे के पास एक साइकिल भी खड़ी है।

यहाँ एक पार्टी हो रही है |

और निचे का फर्श है वो लाल और पीला रंग का है।